लिबरे ऑफिस draw में editing curves और polygons पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप सीखेंगे कि draw में वक्रों और बहुभुजों को edit कैसे करते हैं
इस tutorial के लिए आपको लिबरे ऑफिस draw की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए इस website पर जाएँ
यहाँ हम ubuntu लिनक्स version 1004 और लिबरे ऑफिस suite version 334 प्रयोग कर रहे हैं
अपना routemap drawing एक बार फिर खोलते हैं
पिछली बार हमने वक्र और बहुभुज बनाने सीखे अब सीखते हैं कि उन्हें edit कैसे करते हैं
अब school campus की आकृति को बदलते हैं
यह करने के लिए हम edit points toolbar प्रयोग करेंगे
main menu से view पर click करें toolbars चुनें और edit points पर click करें
edit points toolbar दिखती है
अब school campus बहुभुज को चुनते हैं
edit points tool bar पर points icon पर click करें
object में हरे चुनाव वाले handles नीले edit points में बदल जायेंगे यह दिखाता है कि आप edit point mode में हैं
edit points टूल बार पर insert points icon पर click करें
draw पेज पर जाएँ cursor plus साइन में बदल जायेगा
इस plus साइन को school campus बहुभुज के बायीं तरफ रखें
mouse के बाएं button को दबाएं और इसे दायीं तरफ खींचें button को छोड़ें आपने एक point प्रविष्ट किया है
अब उस points पर click करें जो प्रविष्ट किया था edit points टूल बार में विकल्प सक्षम होते हैं
symmetric transition पर click करें
dotted control line point के आगे दिखती है
campus यानी परिसर की आकृति को बदलने के लिए control line को बाहर की तरफ खीचें आकृति बदल गयी है
बाहर जाने के लिए edit points toolbar से points पर click करें
अब परिसर को दायीं तरफ लम्बा करते हैं
विशेष रूप से केवल आखिरी point को ऊपरी दायीं तरफ लाएं
school campus बहुभुज चुनें
अब edit points toolbar को सक्षम करते हैं
object पर नीले edit points दिखते हैं इस point को चुनते हैं
edit points toolbar पर move points पर click करें
आप देखेंगे कि चुने हुए point गहरे नीले में बदल जाते हैं
अब point को दायीं तरफ खींचते हैं
अपनी आवश्यकता के अनुसार हम objects को शिफ्ट करने के लिए grid को प्रयोग कर सकते हैं
हमने school campus की आकृति को दोबारा बदल दिया है
इस tutorial को रोकें और इस नियत कार्य को करें
एक वक्र बनाएं और edit points toolbar से इस पर सारे विकल्पों को लागू करें याद रखें आपको edit points toolbar में कुशल होने के लिए बहुत अभ्यास की ज़रुरत है
अंततः नक़्शे में सारे objects का समूह बनाते हैं keyboard पर ctrl + a की दबाएं और context menu के लिए rightclick करें
all group चुनें all सारे objects का समूह now गया है
नक्शा पूरा हो गया है आप इमारतों को रंग भी कर सकते हैं; लाइनें प्रयोग करके सड़कें भी बना सकते हैं traffic signals भी बना सकते हैं और कुछ भी जिसकी आप को ज़रुरत हो बना सकते हैं
यहाँ हमारा रंगीन sample routemap है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
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है इस slide में दिखाया गया नक्शा बनाएं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
spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें